ईं तस्वीर मा जु छा हम देख सक्दों कि यखम हम ते एक कपड़ों कि दुकान छा दिखेण लगीं और यख बहोत सारा कपड़ा छन टांग्यां।

ईं तस्वीर मा जु छा हम देख सक्दों कि यखम हम ते एक ब्यो कु टेंट छा दिखेण लग्युं और वै का भैर हम ते एक यूटिलिटी दिखेणी खड़ी।

और यख अलग अलग खाँचों मा जी बहोत सारा कपड़ों का डब्बा भी छन रख्यां एंच बिटि हम ते कुछ साड़ी भी छन दिखेणी लाल रंग की और नीली रंग की साड़ी भी हम ते दिखेण लगीं।

और मंदिर का एंच हम ते एक झंडा भी दिखेणु टंग्यू वैका पिछाड़ी हम ते कुछ पहाड़ भीन दिखेणा और पहाड़ी पर जु छा बर्फ भी पड़ीं।

वि चट्टान पर बिचम हरी हरी घास भी हम ता दिखेण लगीं फंडे बिटि हम ते कुछ डाला बुरदा भी दिखेण लग्यां।

ईं चित्र मा जी हम देख सक्दों कि यखम हम ते एक सब्जी की दुकान छा दिखेणी और दुकान का भैर हम ते बहोत सारी सब्जी छन दिखेण लगीं।